पीछे की तरफ में ग्रीन कलर का कारपेट दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ सोफ़ा दिखाई दे रहा है जिसका कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

आस पास बोहोत सारे लोग आते-जाते दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में सामने की तरफ एक दुकान दिखाई दे रही हैं।

झां पर ऊपर की तरफ एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने कि तरफ कांच लगा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एंगल रखे हुए दिखाई दे रहे जिन पर कपड़े लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो एक दुकान की दिखाई दे रही है जहां पर एक छोटा सा काउन्टर दिखाई दे रहा है।

मंदिर के ऊपर पेड़ दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रह रहा है। मंदिर का कलर पिंक और येलो का दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे एक बोहोत बड़ी मशीन दिखाई दे रही है। मशीन ग्रीन कलर और व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है।

पौधे छोटे कुछ पौधे बड़े दिखाई दे रहे है। पास में एक ब्लैक कलर का बड़ा सा --

यहाँ पे एक प्रतिमा दिखाई दे रही है जोकि येलो कलर की दिखाई दे --

सामने की तरफ ऊपर खंबा दिखाई दे रहा है एक बिजली का तार दिखाई दे रहा है।

ये फोटो एक खेत की दिखाई दे रही है जो काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। खेत मे हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं। कुछ छोटे-छोटे कुछ पौधे बड़े --